जो है आपको जो है आपको होटल या फिर कुछ और आपको नहीं दिखेगा केवल होटल ही होटल बने हुए है।

आप देखें एक घर बना हुआ है सामने पेड़ भी लगा हुआ है और ये कोई बोट का सीन हो सकता है या फिर कोई किनारा हो सकता है जो आपको नीचे आपको दिख रहा होगा कि जमीन है।

और इस टावर में तार गए हैं तार भी देख सकते हो की नीचे आपको काफी हरा-भरा दिखाई दे रहा है हरा भरा --

इसमें थे यह सह सहजानन्द सरस्वती का वो देख पुस्तकालय है पुस्तकालय जो है आप इसमें इसमे सुबह खुलने का टाइम का शाम के बंद होने का टाइम --

एक ताड़ का पेड़ भी सामने आप देख सकते हो और इसमें जो है पानी में यहाँ पे एक बांस जो है वो पड़ा हुआ है किनारे बैठने के लिए जीने --

देखिए ये एक पेड़ लगे हुए है पेड़ के पीछे आपको पानी है पानी है पानी भी दिख रहे है और किनारे - किनारे आप देख सकते हो की--

ऊपर ऐ.सी. लगा है| ऐ.सी. के नीचे एक लाल कलर का बोर्ड भी है व बोर्ड पे सफेद कलर से लिखा हुआ दिख रहा है लिखा के बगल में आप देख सकते हो |

सफ़ेद कलर का होने के बावजूद और इसमें ये भी देख सकते हो एक पेड़ है पेड़ के अलावा इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं बाकी तो आप कार ये सब देख सकते हो की --

रेड कलर की काफी स्पेशल गाड़ीयां हैं और इसमें तो आप देख ही सकते हो काफी कुछ इसमें लगा हुआ है।

पानी गिरने की वजह से ही इस मेज में काफी आपको दिखाई दे रहा होगा पानी नीचे है और काफी इसमें पानी है।